रेंज वेरैटिस मे चीजे होति हैं अवैलबल हैं बुक्स आ स्टैशनेरी का समान जो दिए कनिद्रास अवैलबल हैं नोट बुक्स अंड जितनी भी सारी स्टैशनेरी कि चीज अवैलबल--

किसी अ शादी के रिसेप्शन का सीन यहाँ पे समझ में आ रहा है जिस तरीके से अ मेन स्टेज को तैयार किया गया है।

एक मैरेज फंक्शन के रिसेप्शन का सीन हम देख पा रहे हैं। जहाँ पे ब्राइड एंड ग्रूम जो है बैठे हुए है। जिस तरीके से पीछे का बैकग्राउंड जो स्टेज है वो अ- तैयार किया गया है।

जिस तरीके से ऑउटफिट है पीछे भी बैकग्राउंड की अगर बात करे तो काफी अच्छी तरीके से सजा रखा है इन्होने आर्टिफीसियल फ्लावर्स एंड कोटंस को यूज़ करते हुए--